बाज़ू मे कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है छोटे छोटे से और ऊपर की तरफ बरामदे दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर मे आसमान दिखाई दे रहा है ओर बहुत सारे खंबे दिखाई दे रहे है उन खंबों मे तार लगे हुए दिखाई दे रहे है बिजली के।

और एक मैदान मे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है और कुछ दो पहिया वाहन दिखाई दे रहे है बहुत सारे।

और चारो तरफ हरयाली-हरयाली दिखाई दे रही है मैदान में भी कच्चा रास्ता भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे हिरण दिखाई दे रहे है।

चट्टानें दिखाई दे रही है गोल गोल और पानी के किनारे पर कुछ हरियाली दिखाई दे रही।